बहुत सारा पहिया पड़े हुए हैं जो काले रंग के हैं। इसके आगे एक है जो बोहोत ही अच्छा है और काफी खूबसूरत भी है।

यहाँ पे एक दुकान है जोकि बोहोत ही बड़ी है इसके अंदर लकड़ियों की बनी हुई अलमारी रखी हुई हैं |

यहाँ पे कार्यालय जिलाधिकारी है जो बहुत ही बड़ा है इसके बाहर दो बाइके एक स्कूटी खड़ी हुई हैं जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

इसके बाहर कुछ आदमी आपस में बात कर रहे हैं। कुछ औरतें कार्यालय के चिकित्सालय के अंदर जा रही हैं और इसके बाद दो-तीन मोटरसाइकिल खड़ी हैं जो काले रंग की --